इधर एक पर्चा लिख रहे हैं डॉक्टर साहब और बगल में बहोत सारी भीड़ लगी हुई है।

सारे लड़के कुछ सामान लेने आए हुए हैं और लान लगाए हुए हैं और ये लड़के अपने बहोत खुशी से फ़ोटो खिचा रहे हैं।

और मजे कर रहे हैं और कुछ बच्चे अपने हाथों में किताबें लाए हुए हैं। मैम लोग पीडिएफ बना रही हैं ।